मोटा-मोटा जनानी सब पतला-पतला जनानी सब बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में बैठा है यह पर घर तर है बहुत अच्छा है।